बाहर का और इ ये लड़का है | लड़का भी सूंदर लग रहे कलर्स भी अच्छा लग रहा है और ये सब कुछ अच्छे लग रहे हैं ।

सुप है सुप में तो नारियल है | नारयल सब है ठीक है यह दिप है दिप तो जल रहे हैं |

ये ए.टी.एम. है बैंक है बैंक में एक मशीन है ए.टी.एम. मशीन बैंक का नाम बैंक बैंक --

दो हैं मंजिल बहुत अच्छा लग रहा और ठीक है सब ची --

ग्रीन हरा है सब चीज मस्त लग रहे और ये सब चीज अच्छा है।

घर का नजाड़ा अच्छा लग ड़ा है और ये सीढ़ी भी अच्छा लग रहा और ये घर वाइट कलर का है और ये छत पे --

और यहां पेड़ है ड्राम है ये मशीन है ग गाय हम सबको दूध देती है हम सबको लक्ष्मी माता हम सब --

मानते है उसको भगवान मानते हैं और यहाँ छपरी है छपरी का रंग भूरा है।

वहाँ मंदिर है मंदिर में बजरंग भोला बाबा का मंदिर है और यहाँ --

एक ठो गेट है और इसमें अंदर में भगवान हमलोग के लिए पूरा भगवान है।

और यहाँ पेड़ बहुत सारा है यहाँ धान सब लगे है और धन ये चावल सब --